टेंट के खम्बे भी दिखाई दे रहे है। बहुत सरे आदमी भी दिखाई दे रहे है जिनमे कुछ महिलाये भी दिखाई दे रही है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है। एक एक्टिवा खड़ी हुई दिखाई दे रही है |

और एक फव्वारा भी दिखाई दे रहा है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।

और एक गेट दिखाई दे रहा है जिस पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुनाया क्षेत्र कोंच जनपद जलोन लिखा हुआ है। एक लोहे का गेट भी देखाई दे रहा है।

मम्म सीमेंट का जिस पर लाइब्रेरी लिखा हुआ है । उसमें एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है । पेड़ दिखाए दे रहा है आसमान दिखाए दे रहा है ।

इस तस्वीर मे एक बोहोत बड़ा गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर स्वर्गीय बहादुर सिंह महाविद्यालय माधोगढ़ लिखा हुआ है।

इस तस्वीर मे एक बहोत बड़ा हाल दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी मशीने रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

हैं। एक पंखा भी दिख रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ड्राई क्लीनर जेंटली लिखा हुआ है।

बेल दिखाई दे रही है जो हरी-भरी और उन पर एक पक्षी भी दिखाई दे रहा हैं। पक्षी की चोंच लाल दिखाई दे रही है पक्षी का राग नीला है।